और एक कार का बैनर भी सामने पर लगाया हुआ है।

और एक दरवाजा चलने के लिए है।

और बहोत सारा लाइट बल्ब्स जला हुआ--

वो सामने पर एक खिड़की भी और एक पर्दा भी नजर में आ रहा है।

तस्वीर पर मुझे लिफ्ट नजर आ रहा है।

डायपर और लोशन भी दिखाई दे रहा है और जला हुआ लाइट्स बल्ब भी दिख रहा है।

तस्वीर पर मुझे एक कमरा नजर आ रहा है।

और एक टेबल भी दिखाई दे रहा है और सामने पर स्विच बोर्ड भी है।

कुछ चिपकाया हुआ तस्वीरें भी हैं।

तस्वीर पर मुझे सड़क नजर आ रहा है और सामने पर कुछ गाड़ियां भी।

इसके अंदर बैठने के लिए एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है जिसके अंदर दो ब्लैक शक्ल वाले औरत है।

और उसके पीछे कुछ पहाड़े भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे सुंदर खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है और हरा रंग का ग्रास भी दिख रहा है।

और बिल्डिंग के ऊपर कुछ बड़ा सा लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और ये सारे चलता हुआ वे--